रंगा हुआ एक बोर्ड है जिसमे लाइटिंग लगी हुई है नीचे एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा हैं।

इस चित्र में पीछे नीला आसमान हरे-भरे पेड़-पौधे बहुत सुंदर लग रहे है एक रेलिंग दिखाई दे रही है जिसकी तरफ बहोत --